रोयल पैलेस नाम का गार्डन है यहां पर पिंक कलर की लाइट्स ऐंड टेन्ट से काफी अच्छा सजाया हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल का फ़ोटो है जिसका नाम सदर अस्पताल गोपाल गंज है। बाहर की साइड काफी सारी गाड़ियाँ पार्क हैं जिसमें से एक वाइट कलर की कार भी पार्क है।

नीचे की तरफ एक पानी की टंकी रखी हुई है और पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं जोकि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।

स्टेज के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं जिनपर गेस्ट बैठे हुए हैं। नीचे की और कारपेट बिछा हुआ है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है | यह सब बोहोत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है।

नीचे की तरफ एक प्लेट और कु-कुछ कुछ कागज रखे हुए हैं।

कि हम देख पा रहे हैं सामने की तरफ एक डेयरी बनी हुई है और उसके साथ में एक किराने की दुकान भी बनी हुई है।